यहाँ पे एक पोस्टर रखा और लगा हुआ है यह पोस्टर आधार कार्ड बनाने का काम किया जाता है यहाँ पे बैंक ऑफ़ बड़ौदा का लोगो लगा हुआ है यहाँ बैंक खाता खुलता है और पैसा जमा --

यह एक दुकान है इस दुकान का नाम श्री साईं मंगल मैया मंगलम --

यह एक पर्वत जैसा दिखाई दे रहा है यह पर्वत के बीचो-बीच पानी भरा जा रहा है पर्वत के --